बिल्डिंग बनायी जा रही है पाइप लगा हुआ है वहाँ पे ईट पड़ी हुई है रेता पड़ी हुई है गिट्टी पड़ी हुई है।

ये सब्जी का ठेला है वहाँ पे केला रखा फल रखा हुआ है पत्ता गोभी है और बहुत सारे सामान रखा हुआ ह।